ये इंस्टीट्यूशन नजर आ रहा है ये विद्या इंस्टीट्यूशन है जो बैनर लगा हुआ है।

ये केक मुझे दिखाई दे रही है इस केक में बहुत सारा चॉकलेट भी ऊपर रखा हुआ है।

पीछे में कुछ गाड़ी भी रखी हुई है।